कुछ एस.एस. कंपनी के बा कुछ टोन कंपनी के बा कुछ एडिडास के बा कुछ एस.जी. के बा एमे बहुत तरह तरह की बौल भी रखल बा | कुछ लाल बा कुछ नारंगी रंग के बा कुछ उजला भी बा।

इ ए_टी_एम से बहुत से लोगों की उम्मीद जुड़ल बा कहीं भी कभी भी पैसा की जरुरत पड़ेला| अगर वहां ए_टी_एम बा तो आराम से जाके पैसा निकाल सकत |

ई फोटो में एगो जगह कुआँ खुदाई खुदाई हो रहल बा जगह के चारो तरफ से घेर देल बा पीछे लई गई है। ओगा पीछे एगो बिल्डिंग भी बा।

एमें कुछ आल्टो बा कुछ जिप्सी बा कुछ वैन बा इ गेरेज के पीछे बहुत ही बड़ा बिल्डिंग बा।

एगो सुंदर ता बहुत ही गज़ब के लागता पानी के अंदर।

फोटो में एगो जिम के फोटो देल बा जेमे तरह-तरह के जिम करे वाला बा |